कुछ बिल्डिंग हैं एक बिल्डिंग गुलाबी कलर की है जिसमें कुछ खिड़कियाँ हैं आसमान दिख रहा है ।

एक पाइप पर एक इंसान खड़ा हुआ है बाइक के ऊपर हेलमेट रखा हुआ है ।

रेत पर एक लड़की खड़ी हुई है घर के उपर एक टावर लगा हुआ है घर के साइड में एक निसरनी लगी हुई है।

तथा एक ने नारंगी कलर का दोनो ने बैग टांगे हुए है।

उसके सामने कुछ लोग काम कर रहे है लोहे के सरिए रखे हुए है लोगो ने पीले कलर का कैप लगाया है।

पे नीले कलर का पोस्टर लगा हुआ है जिस पे गोपालगंज लिखा हुआ है।